गाड़ी के पीछे छोटा छोटा पेर है नीचे ब्राउन कलर का फर्श --

इस तस्वीर में एक स्कूल है जो स्कूल हरिहर दास उच्च विद्य वि विश्वविद्यालय है।

पिलर के पास एक लड़की खड़ी है।

बहोत सारे वीवो के बैनर लगे हुए हैं।

नीचे जियो लिखा हुवा है साइड में कव्हर सब है।

ये तस्वीर एक दुकान का है जो कि कपड़ा का है।

इसमें एक डमी ऑरेंज कलर का कुर्ती पहनी है।

इस तस्वीर मे बहोत सारे फूल के माला है जो की व्हाइट कलर मे है।

नीचे रेड और गोल्डन कर दिया हुआ है।

एक कमल का फूल रखा हुआ है गुलाबी कलर का।

साइड में एक येलो कलर का फूल रखा है।

साइड में दीवाल है जिसका कलर व्हाइट और रेड है।

मैदान के साइड वाइड में छोटे छोटे घास है।

ये तस्वीर एक सैलून का है।

इसमें एक आदमी दाढ़ी बनवा रहा है और एक बना रहा है जो कि आसमानी ब्लैक कलर का चेक वाला शर्ट पहना हुआ है।

बहोत सारे बैलून लगे हुए हैं ऊपर पंखा है वाइट कलर का --

तीन दुकान हैं जिसके बगल में बहोत सारे बाइक स्कूटी लगे हुएं हैं।

और बोहोत सारे आदमी खड़े हैं बगल में पानी पुरी का ठेला लगा हुआ है।

साइड में एक दीवाल है व्हाइट ब्लैक कलर का।

मस्जिद के सामने एक पेड़ है बड़ासा मस्जिद के बगल मे मैदान हैं।

आदमी औरत सब बैठ के खाना खा रहे हैं।

आसमान पूरा पीला लाल आसमानी व्हाइट है।

साइड से रिक्शा सब जा रही है।

ये तस्वीर एक मॉल की है जहां दो एस्केलेटर लगे हुए है।

एस_बी_आई कार्ड का एक रूम है।

दोनो साइड लाइट लगे हुएं हैं।

तस्वीर में घर है जोकि लाल कलर का और ऊपर ब्लैक है।

उसके साइड में अलामदहि डाकघर लिखा हुआ है।

सामने बहोत सारी लेडिस और आदमी हैं।

घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ है।

इस तस्वीर में एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा है।

बच्चा व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए बैठा हुआ है।

व्हाइट कलर की बहुत सारी रस्सी है जिस पे काम किया जा रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा पंडाल लगाया हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

पंडाल के आगे गेट बना हुआ है येलो कलर का--

दो तीन रिक्शा चल रही है।

साइड में एक बड़ा सा बिल्डिंग है व्हाइट और आसमानी कलर का --

तो मिट्टी के अंदर कुछ खुदाई किया जा रहा है साइड में पेड़ सब है।

अगल बगल छोटे छोटे पेर है मिट्टी है हरियाली छाई हुई है।

इस तस्वीर में एक ब्राउन कलर का सोफा है।

बहोत सारे छोटे छोटे हरा कलर के घास है।

और साइड में दो कुर्सियां रखी हुई है।

सब्जी मंडी है जहां पर आदमी लोग औरत लोग मछली लेने आए हुए। वहां पर बहुत सारी मछली मिल रही है।

एक बड़ा सा पीला कलर का टेबल है जिसके ऊपर --

ब्लैक कलर का शिवजी का मूर्ति है बहोत सारे उसमें मूर्ति बने हुए हैं।

राम भगवान के हनुमान जी के --

एक बड़ा सा मैदान है जहां पे बहोत सारे लड़का लड़की योगा कर रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा मैदान है।

नीचे रेड कार्पेट बिछा हुआ है साइड में एक मूर्ति है और कुछ फूल के माले लगे हुए हैं।

तस्वीर में महिलाओं के लिए सुंदर और रंग बिरंगे स्वेटर डिस्प्ले किए गए हैं।

नाव के ऊपर दो आदमी बैठा हुआ है।

समुंदर के किनारे में बहुत सारा पेर पौधा है।

ये दो आदमी का चेहरा ब्लर करके रखा हुआ है।

इस तस्वीर में एक बैंक परिसर का दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग बैंक के बाहर सीडीओ पर बैठे हैं।

ये तस्वीर शादी की है जहां लड़का लड़की की शादी हो रही है।

इस तस्वीर में एक मंदिर है जो की ग्रे कलर का है।

दीवाल पे बहोत सारे कैंडल रखे हुए हैं जो कि जल रहे हैं।

मंदिर के ऊपर व्हाइट लाइट है।

रूम के अंदर बहोत सारे कपड़ा का पीस हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा हॉल है।

हॉल का फर्श ब्राऊन कलर का है।

और दीवाल वाइट कलर का है बड़ा बड़ा सा आईना लगा हुआ है।

सैलून के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है व्हाइट टी शर्ट और ब्ल्यू जींस पहने --

साइड में एक चेयर रखा है जिसके ऊपर बाल्टी है वाइट कलर का।

इस तस्वीर में व्हाइट कलर का फर्श है बहोत सारे मार्बल रखे हुए हैं।

ये तस्वीर एक होटल का है।

प्लेट में बिरयानी और सैलेड है और एक प्लेट पूरा खाली है।

टेबल पर एक बिसलेरी का बोतल है।

ये तस्वीर एक गोडाउन का है जहां पर बहत सारे मिस्त्री काम कर रहे हैं।

एक आदमी गिट्टी का काम कर रहा है येलो हेलमेट लगा कर बगल में पेड़ है।

इस तस्वीर में एक येलो सा बड़ा गेट है जिसके ऊपर हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला दो हजार उन्नीस लिखा हुआ है।

मेला का पंडाल ब्लू वाइट कलर का है।

एक नदी हैं वहां के साइड में हरा कलर के घास है और उसके बगल में एक बड़ा सा पेड़ है।

का कलर वाइट और ब्लैक है।

गाय बंधा हुआ है ग्रीन कलर के रस्सी से।

एक व्यक्ति के हाथ में पट्टी बनी हुई है।

शेल्फ पर कई दवाइयां रखी हुई हैं।

इस तस्वीर में एक छोटी बच्ची है जो चार चोटी की हुई है।

बहोत सारा रेड कलर का क्लिप लगाई हुई है।

सामने एक ड्रॉल है जिसमें कुछ कुछ सामान है दीवाल ऑरेंज कलर का है।

इस तस्वीर में एक आदमी है जो ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ है हाथ में बोतल है गला में ब्लूटूथ पहना हुआ है।

साइड में पेड़ है बड़ा सा कुछ आदमी भी।

इस तस्वीर में एक ए_टी_एम है जिसका गेट व्हाइट कलर का है।

ए_टी_म के बाहर तीन आदमी खड़े हुए हैं।

ये पीछे बहोत सारे पेड़ हैं गेंदा के और एक घर भी है।

इस तस्वीर में एक रोड हैं बहोत सारी बाइक चल रही हैं बगल मे नदी हैं।

ऊपर आसमान है आसमानी कलर का।

पानी के अंदर जीव जंतु है।

इस तस्वीर में एक वाइट कलर का दिवाल है जिसके ऊपर गोल्डन कलर का बुद्ध भगवान का मूर्ति है।

नीचे एक लड़का खड़ा है जो व्हाइट और ब्लू जींस शर्ट पहना है।

इस तस्वीर में बहोत सारे आदमी है जो की बैंड बाजा बजा रहे हैं।

ये तस्वीर एक रोड का है जहां दो तीन बस खड़ी हुई है।

कुछ बाइक है बहुत सारे आदमी लोग है लेडीज है।

टेबल के दोनों साइड मिकी माउस बना हुआ एक कार्टून है जिस पे बैलून व्हाइट और रेड बैलून सजाया हुआ है।

इस तस्वीर में एक फूल का दुकान है जिसमें बहुत सारे फूल रखे हुए हैं कुछ फूल रेड कलर के हैं कुछ येलो कलर के हैं कुछ व्हाइट और कुछ पीला कलर --

बहोत सारे लाल कलर के गुलाब है पत्ते लगे हुए --

और बहोत सुंदर दिख रहे है जिसपे पानी का बूंद बूंद छींटा हुआ है।

रेस्टोरेंट का कलर व्हाइट है और खिड़की ब्राउन कलर का है।